और मस्त गाछ हैं और नीचे मे हरियर-हरियर पानी है।

लगता है बगल में मंदिर है यहां पे लग रहा है घुमने वाला जगह है।

सब चीज का यहाँ पे वो --